एक मैदान में एक बकरी का बच्चा बैठा हुआ है व्हाइट और ब्लेक और उसके लेफ्ट हेंड पे बकरी है|

और पौधे भी बहुत सारे है और-- अपना एक ऊंचा पेड़--